ये ह पुराना छप्पड़ सा दिखाई दे रहा है यहा हं हमे बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है और बहुत सारे हमे इसमे तार आते - जाते दिखाई दे रहे है।

तकली भी रखी हुई है एक आदमी रेड कलर के मॅट पे एक मछ्ली रखे हुए है एक आदमी बहुत बड़ी-बड़ी मछ्ली रखे हुए दिखाई--

जो व्हाइट कलर के टोपर लगाए हुए है ये कुछ कैमरा को पकड़े हुए है और पीछे हमें बहुत सारे मजदूर काम करते हुए दिखाई दे रहे।

ये इमेज एक जिम की है यहाँ बहुत सारे लड़के हमे जिम करते हुए दिखाई दे रहे है।

रेड कलर का कुछ रखा हुआ है जिसमें बहुत सारी कॅण्डल जल रही है और नीचे अह दरिये पे ग्रीन कलर की मॅट बिछाई गयी है।

यह प्रवेश द्वार है हॉल का और यहाँ हमे दो आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे है एक आदमी एक मोबाइल पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा है नीचे रेड कलर की मॅट बिछाई गई है।

एक ट्रक भी खड़ा हुआ है एक बाल्टी रखे रखी हुई है जिमसे रेड कलर का पनि दिख रहा है और पीछे तीन चार ड्रम भी रखे हुए है।